न्यू गैलेक्सी जेंट्स पार्लर ।

मन को मोह लेता है काफी और एक आश्रय देखने पे आश्चर्य ता कि किस तरीके से बनाया है देखिए आप खुद ही देखिए।

ये पूल के नीचे का दॄश्य है। एक सरकारी ऍड लगाए गए वे है स्वछता सर्वेक्षण दो हजार बाइस का।

नोट बुक हो गई पेन वगैरा सारा सबकुछ सारा कुछ मिलता है यहाँ पे --

एक कंस्ट्रक्ट कर रही है। रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। तो ये हमारे कल ऐतिहासिक कला का निशानी है।

भाई अपने एक सेल्फ़ी ले रहे।

आकाश प्रोविशनल स्टोर --